इस चित्र में हिन्दू देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तिया हैं जहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है।

यहाँ तीन माले की एक बिल्डिंग है बाजू में बिल्डिंग के एक आदमी स्कूटी के ऊपर वाइट कुर्ता पहन के बैठा हुआ है।

कई सारे लोग है जो यहाँ वहाँ घूम रहे है बिग बाजार सामने दिखाई दे रहा है।